और एक लड़का वो हाथ टिका कर खड़ा हुआ है और वो नंगे पैर है लड़का और उसने अं सफ़ेद कलर की टोपी अं और नीले कलर की टी-शर्ट और जीन्स पहना हुआ है और एक लड़की है जिसने अपने सर पर अं चश्मा लगाया हुआ--।

और बिल्डिंग के अंदर म्म फुगे लगे हुएं हैं बहोत सारे और जमीन पर कालीन बिछी हुई है जो ज कालीन हरी और सफ़ेद कलर की --

पन्नी के ऊपर बहुत सारी मच्छियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर बोहत सारे लोग बैठे हैं और उनमे से दो लोग बैठे हैं जिसने एक लाल कलर का माक्स लगाया हैं और एक ने सफ़ेद कलर का माक्स लगाया है । यहाँ पर काफी सारे बल्ब हैं जो जल रहे हैं।

उम्म दीवा एक इसकी छत का कलर सफेद है और इसपर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और नीचे एक लड़का --

जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। बच्चे खड़े हुए हैं। किताबें ले रहे हैं और उम् एक बच्चे ने लाल अह वो काले कलर का बैग टांगा हुआ है। एक ने नीले कलर का बैग टांगा हुआ है।

जो किताब लेने आया है और वो पीले अ सफेद कलर की टी-शर्ट और काले कलर का लोवर पहना हुआ है। यहां पे बोहोत सारे पैन रखे हुए हैं।

कुछ बोल्ट टाइप लगे हुए हैं और ऊपर अ जमीन है जिसका रंग सफेद है और दीवालों का रंग अ पीला है और परदे लगे हुए हैं।

कमरा है जिसमे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक सोफा रखा हुआ है जिसका रंग काले कलर का है और यहाँ पर सोफे पर एक बैग रखा हुआ है वो भी काले म्म कलर का है और यहाँ पे दीवाल पे एक टेबल फैन लगा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है।

मंदिर है। मंदिर के सामने एक रेलिंग लगी है जो पीले और लाल कलर की है और इस मंदिर के ऊपर एक चोटी है जो हरे कलर और पीले कलर से जो पुती हुई है और एक खुला आसमान है।

यहाँ पर मंदिर के साइड में दो पिलर है जो पिलर लाल रंग के है और इस मंदिर में तीन मूर्तियाँ हैं। तीन मूर्तियाँ पीले कलर की हैं।

मिन्टेड अअअअअ रोड बना हुआ है और बोहत सारे लोग खड़े हुए हैं। एक झोपड़ी बनी हुई है। एक आदमी झोपड़ी से टिक कर खड़ा हुआ है।

दुकान बन रहा है जिसका फौन्डिशन भरा हुआ है और उस फौन्डिशन पर एक अअअअ आदमी खड़ा हुआ है जिसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है और एक बैग टंगा हुआ है जिस --

यहाँ पर चार पांच लोग खड़े हुई है और उनके पीछे उम्म अ पर्दे लगे हुई है कई कलर के एक पर्दा उम्म लाल कलर का लगा हुआ है एक करदा एक पर्दा पीले कलर का लगा हुआ है पीले परदे पर लाल कलर के--

गुलाब लगे हुई हैं और एक उम् अ रेलिंग बनी हुई फूलों से एं एक पट्टी पर।